ऑटो दिखाई दे रहे बहुत सारे कार दिखाई दे रहे कार का कलर हमे सफेद दिखाई दे रहे है और बाईके खड़ी दिख रही है और हमे यहां पे बहुत सारे लोग नजर आ रहे है।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है कुर्सियो का कलर हमे सफ़ेद और नीला दिखाई दे रहा है और हमे यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग इधर-उधर जाते हुए नज़र आ रहे है।

एक थिएटर दिखाई दे रहा है थिएटर में सफेद कलर का पर्दा नजर आ रहा है और हमे बहुत सारी लाईटे दिखाई दे रही है और हमे आजू-बाजु की दीवारे दिखाई दे रही है जो की कथथे कलर की नजर आ रही है और हमे छत का कलर कथथा दिखाई दे रहा है।

और हमे यहां पे बहुत सारे सीटे दिखाई दे रही है जो कि लाल कलर की नज़र आ रही है जो हमे यहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बोहुत बड़ा एक पर्दा दिखाई दे रहा है जो सफ़द कलर का नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमे एक छत दिखाई देरी है जो की काली --